रूम भी दिखाई दे रहा है रूम व्हाइट कलर से पेंट किया गया है।

सामने बहुत सारे सामान रखे हुए हैं जो येलो कलर में दिखाई दे रहे हैं।

लाइन का तार भी खींचा हुआ है आकाश भी दिखाई दे रहा है।

सामने हिमालय का दृश्य दिखाई दे रहा है उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे--

दो वाइट कलर के कपड़ा पहना हुआ है ब्लैक कलर का पहना हुआ है हाथ में मोबाइल भी है।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

यह एक रूम दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे लाइट लगे हुए हैं।

इसका बगल में बहुत सारे घर दिखाई दे रहे हैं सूर्य अस्त हो रहा है।

बहुत सारे दीवार में कुछ डिजाइन बनाए हुए हैं मछली फिश पानी में डाले हुए हैं।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

सामने बहुत सारे घास के दृश्य दिखाई दे रहे हैं उस पर एक बॉक्स रखा हुआ है।